यहाँ पे बहुत सारे कुर्सियों पे बहुत सारे लोंग लोंग बैठे हुए है यहाँ पे पंडिता भी है यहाँ पे मंत्र माला गया है ।

यहाँ पे आजू बाजू बड़े बड़े यहाँ भी झाला भी दिख रहे है यहाँ पे बहुत सारे लोंग है ।

छोटे छोटे पोट में प्लांट लगाए गए है यहाँ लकड़ी की सिली हुई है यहाँ पे फैफ़ा पड़े हुए है ओर डब्बे है यहाँ पे --

ये ए ए ए एक नीचे गाड़ियों को पार्कड़ किए हुए है यहाँ पे मेडिसन स्टॉल भी यहाँ ऊपर सिलियाँ भी है ।

ये एक छोटी सी दुकान या होटल है फास्ट फूड यहाँ पे है ।

और यहां पे बहुत सारी लाइटिंग वाली गई है ब्लू एंड ग्रीन कलर की यहां पे मर्जी के पोटलिया--

अह ये बीच में लगाया गया और आजू बाजू बहुत सारी इसमें जाली वाली पट्टियाँ भी इसके बाजू में यहाँ माले गए है ।

यहाँ पर लाइट का खम्बा भी है यहाँ पर वाइलिंग भी दिखरी है गाड़ी खली हुई है नीचे --

पटलियाँ है और यहाँ पर छोटे छोटे पटले भी दिख रहे है यहाँ पे अद्वे भी काम कर रहा है यहाँ बाजू में बिल्डिंग है आजू बाजू --

बाउंड्री उठा कर कचरा हुआ है यहां पे एक ब्लू कलर की स्कू स्कूटी खड़ी हुई दिख रही--

ये एक चोटी सी किराना शॉप है यहाँ मैगी के पैकेटा बूस्ट कॉम्प्लैन के पैकेटा मीट के मसाले चिकन मसाले सोफ़ के पैकेटा --

और यहाँ पे फिश के मसाले यहाँ पे वाईल का बन्डल दिख रहा है यहाँ पर बेरल रखा हुआ है ।

ये एक होटल है और यहाँ पे खाने की डिश कुछ बनाया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे --

मास्क पेहना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे वर्करस काम कर रहे है और यहाँ चिकन मटन के आइटम बनाया जा रहा है ।

यहाँ पे बाजू एक पालक है यहाँ पे लेल कलर के कुर्सियाँ रखे हुए है गाडियाँ भी है यहाँ पे एक दुकान भी है दूध की --

ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ पे नीचे बहुत सारे दुकाने लगे हुए है और यहाँ कार भी खड़ी हुई है यहाँ पे जाली भी --

और यहाँ पे कुछ पल रहे है किताबों में देख कर इनके सभी के व्हाइट कपड़े है ये स्टेप से लेके ऊपर तक खले हुए है ।

यहाँ पे इनके बड़े उस्ताद भी है और और इनके हाथों में किताबे भी यहाँ पे व्हाइट कलर दिख लही है यहाँ --

ये एक बड़ा सा घर है ऊपर फ फै फ दिखरे सलाखे दिखरे --

सामने सलाख के उस पार कनकलेट गीली हुई है गाड़ी है यहाँ रोड़ में भी गाड़ी जा रही है सामने --

ये एक लोटस से गैलरी एक यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट का सामान लखा हुआ है टेडी बियल यहाँ पे डमी भी --

यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे बिल्डिंगा है बहुत सारे लोंग है गवर्नमेंट ऑफिस भी है ।

यहाँ पर मीठी पड़ी हुई है नीचे फटले हिले हुए है कुर्सियाँ बिछाए गए यहाँ पे ताकि दिखरी है सोलर सिस्टम लगाए गए ।

ये एक मछलियों की दुकान है यहाँ पे छोटे बड़े व्हाइट एण्ड ब्लैक कलर की मछलियाँ है काटे हुए ।

ये एक दुकान है और ये गणेश बुक स्टॉल है बाहर टेबल है फुट्टे पले हुए यहां रेड कलर --

यहाँ पर ब्लू कलर की एक बुथी भी है और इसमें दूसरी दूसरी टमाटर रखे हुए है यहाँ एक बाजू बड़ा सा कैजुए का ठेला है उसमें --

अभी दिख रही है और यहाँ पर बहुत सारा डिफ्रन्ट कलर के डिफ सब्जी लखी हुई है इस मार्केट में लाए ।

ये एक इलाका है यहां पे खिला दिख लहा है यहां पे कुछ मंदिल है।

आजू बाजू घास हाटी हुई है छोटे से झाड़ है मिट्टी पड़ी हुई है ऑल यहाँ आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा है उपर आसमान भी यहाँ पर दिखला है बाजू --

यह एक वॉटरफॉल है यहां पे ऊपर पत्थरों में से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है और नीचे ये--

बाजू जाली माली गई है ये आजू बाजू बड़े बड़े लाइट के खंभे है वहां पे बाउंड्री के ऊपर--

और बाजू टीन सेट मारे गए आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी यहाँ पर दिख रहे है ।

बाहर का गेट बंद है येलो कलर का है यहाँ पर एक छोटा सा लाइट का फोकस है सर्कल ग्लास का यहाँ पर अंदर इंस्टीट्यूट आजू बाजू --

ये एक यहाँ पर बहुत सारे कारा पार्क कीये गए है यहाँ पे बहुत सारे लोंग है टाइल बिछाए गए है ।

छोटे बच्चे है स्ट्रॉस रखे हुए है रेड कलर की बकेट है बाजू में भी दुकाने है यहाँ पे ऊपर बिल्डिंग दिख रही है लेते वाइरा निकला है ।

अह ऊपर आसमान भी दिख रहा है और यहाँ पे आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी गिरे हुए दिख रहे है ।

और यहाँ छोटे छोटे पौधे लगाए है बड़े झाड़ा है रेडी काम पे वेला दिखले --

पीछे टाइल बिछाए गए है सामने जाली है लाइट घड़ी हुई है ।

अह फरशी के भी कट्टे बनाए गए है यहाँ पे आजू बाजू बड़े बड़े है ।

यहां पे छोटा सा कट्टा बनाया गया है बैठने के लिए और चेयर्स रखी गई यहां पे छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं बड़े-बड़े झाड़ा हैं यहां ये --

ये एक बड़ा सा रूम है यहाँ पे बहुत सारे पड़दे मारे गए है और फ्लावर्स है ।

ड्रेन छोड़े गए है व्हाइट है रेड ऑरेंज येल्लो ब्लू कलर के यहाँ बड़े बड़े फैना लगाए हुए है ।

बॉक्सेस भी रखे हुए है और आजू बाजू दुकाने है बड़े बड़े झाड़ा है पीछे भी बहुत सारे लोंग है और ये आवेद भी खड़ा हुआ है ।

सामने आजू बाजू झाड़ा दिख रहे है पहाड़ा दिखरे है सुर्खी हुई झाड़ छोटे हुए ऊपर आसमान भी दिखरा है ।

नदी का पानी आगे बेहते हुए यहाँ पे जा रहा है और देख रहे है यहाँ पे सब लोंग --

और यहां पे साइकिला भी है स्कुटियां भी है।

और यहां लाइट के खंबे झंडे लगाए गए पोस्टर्स है दीवाल के ऊपर बहोत सारे पोस्टर मे यहां पर लगाए गए--

ए ए एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है यहाँ पे --

बाउंड्री खींची गई है यहां पे अ बहोत सारे झाड़ा भी यहां पे गिले हुए दिख रहे यहां--

ये एक बड़ा सा पेट्रोल पम्प है और यहाँ पे बहुत सारे लाइटा है पिलर से नीचे टायर बिछाए जाएगे ।

अब जो बा जो बहुत सारे झाड़ा भी और वर्कर भी काम करने वाले है यहाँ पे बहुत सारे लोंग भी दिख रहे है ।

स्टार भी लगाया गया है पीछे ब्लू कलर का सीट भी वहाँ ली गई है बहुत सारे लाइटिंग भी चालू है यहाँ पर जीसस भी यहाँ पर बने हुए है ।

और यहाँ पे अभी मेरे वीइकल पे कुछ स्पेस भी दे रहा है यहाँ पर बैठने के लिए टेबल भी रखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे लोंग भी बैठे हुए है ।